आदमी को ब्लू कलर का सूट पहेना हुआ है।

पीछे भी दो आद जने खड़े हुए है।

ये गाड़ी खड़ी हुई है ये मंदिर जैसा दिख रहा है।

उसके ऊपर लिखा है इंडियन ऑयल एक गाड़ी खड़ी हुई है।

टेबल के ऊपर कुछ बोतल रखा है वाइट कलर की मशीन है।

जाने के लिए रस्ता बना हुआ है।

सीढ़ी दिख रही है पेप्सी का बोर्ड लगा हुआ है।

पीछे थोड़ा पेड दिख रहा है खुला थोड़ा आसमान भी दिख रहा है।

थोड़ा थोड़ा आसमान भी दिख--

कुछ लोग बैठे हुए है लाइटें दिख रही है।

बकेट दिख रही है कार दिख रहा है।

फूल का कलर पिंक है येलो है ऑरेंज है यहां पर औरत भी बैठे हुए है।

बहुत से पेड़ दिख रहे है नीचे भी हरियाली हरियाली है।

बाइक सर्विस कर बाइक सर्विस बोर्ड पे लिखा हुआ है।

एक आदमी सर्विस कर रहा है गाड़ी का।

ये सोफिया हाई स्कूल है ऑटो दिख रहा है।

बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं सड़क देख रहे हैं।

ब्लू कलर देखा जैसा गिलास देख रहा है।

ईंटे पड़ी हुई है एक बोड ढाला हुआ है।

ये एक गार्डन है गार्डन में एक--

बोट में बैठा हुआ है एक वोट में सिंगल आदमी है।

मस्जिद दिख रहा है दो गाड़ी दिख रही है।

एक के ऊपर ब्राउन कलर स्लैब लगा हुआ है दूसरे पर वेट लगा हुआ है।

लाइटें दिख रही है तीन खिड़कियां दिख रही है।